जिसमें जो है और उसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक आदमी नीचे झुका हुआ है।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

पीछे कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक अह घर भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चे एक स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए --

और दो जो है वो ब्लैक कलर की है।

सामने लिखा है ऑन योअर स्ट्रिप्स ।

हर टेबल पर दो दो तीन तीन गिलास रखे हुए हैं।

खेलते हुए दिखाइ दे रहे हैं।